वातावरण शांत और ताजगी से भरा हुआ लग रहा है।

यह तस्वीर किसी बर्थडे पार्टी का है।

पार्क में कुछ खेल के उपकरण भी हैं जिसमें एक झूला और एक चढ़ाई की संरचना शामिल है।

यह एक आरामदायक स्थान है।

जिसका नाम कारामल रखा गया है।

जो कि देखने में काफी आकर्षक लग रहा है क्योंकि यहां पे रंग बिरंगे रंग रंगे हुए है।

इधर एक सफेद गाड़ी खड़ी है।

और ऊपर नेत्र श्रेष्ठ चिकित्सालय का तस्वीर लगा हुआ है।

काम करने के लिए ये एक व्यवस्थित ऑफिस हो सकता है।

और अन्य लोग प्रवेश द्वार व लॉबी में खड़े हैं।

और एक व्यक्ति किसी को सामान देते हुए नजर आ रहा है।

जैसे कि प्राकृतिक आपको अपने बाहों में समेट रहे हो।

किनारे दो बेंच बैठने के लिए लगे हुए है।

आसपास का वातावरण बहुत ही जीवान्त और सक्रिय लगता है।

ऐसा लगता है कि ये स्थान बच्चों के लिए बेहद आकर्षक है।

गेट खुला हुआ है जो नए अवतरण और स्वागत का संदेश देता है।

ऐसी गतिविधियां अक्सर ध्यान या योग स्तरों में की जाती है।